यह छव किसी बेडरूम की है जिसमें कि ये साइड में एक सोफा पड़ा हुआ --

इस छवि में सामने की तरफ एक मस्जिद दिखाई दे रही है जिसको दो कलर से कलर किया गया है हरा और सफेद--

यह छवि किसी स्कूल की है जिसमें की दो टीचर बच्चों को राष्ट्रगान करा रहे हैं।

इसके आसपास छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे रहे हैं और और मेन मंदिर में जाने के लिए जीने भी दिखाई दे रहे हैं।

इस छवि में यह एक रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है।

चित्र में एक गंदा नाला दिखाई दे रहा है।

इसमें कि बहुत सारा कूड़ा दिखाई दे रहा है और पानी भी गंदा दिखाई दे रहा है।

दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने दो थालियों में लड्डू रखे हुए हैं।

इस छवि में बहुत सारी वाटर स्लाइडें दिख रही हैं जिसमें से कुछ घुमावदार है कुछ जिग-जैग हैं और कुछ सारंग गर्त जैसा है।

एक स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा जिसमें की बहु सारे बच्चे और कुछ लड़के और कुछ लड़कियां--

अपने कान में व्हाइट लीड लगाई हुई है और नीला शर्ट पहने हुए--

के ऊपर से एक स्वेटर पहने हुए है।

इसको डेकोरेट करने के लिए ये लाल गुलाबी एवं नीले गुब्बारों का प्रयोग किया गया।

यह दृश्य किसी माल का है।

यह छवि किसी कैफे में की है जिसमें कि की टेबल और कुर्सियां हैं।

इस गार्डेन के कुछ पेड़ अह अह हल गहरे लाल कलर के--

सजावट के लिए बहुत सारे स्टार्स लगी हुई है और नीचे की तरफ बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और

यह छवि किसी मीटिंग की है जिसमें की ई पांच व्यक्ति बैठे हुए हैं।

के सामने उनका नाश्ता रखा हुआ है और एक एक बॉटल पानी रखा हुआ है।

कुछ खजुरिया के पेड़ हैं और भी बहुत सारे अन्य पेड़ हैं।

इस छवि में सामने की तरफ एक इमारत दिख रही है जिसको डेकोरेट करने के लिए गुब्बारों का प्रयोग किया गया है।

इस गेट के अंदर जाते हुए कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने व् सर पर टोपी जैसा कुछ बांधा हुआ --

छवि में एक के सामने की तरफ मंदिर दिखाई दे रहा है।

के सामने एक नंदी बाबा की मूर्ति बनी हुई है जिसकी कुछ लोग पूजा कर--

पिक्चर में और एक खंभा दिखाई दे रहा है और भी खंभे दिखाई दे रहे हैं।

सारे व्यक्ति बैठ कर ब्रेकफास्ट या डिनर कर रहे हैं।

कुछ कर्मचारी खड़े हुए हैं और जिसमें से कुछ कर्मचारी बैठे हुए हैं।

कुछ व्यक्ति बाइक से जा रहे हैं जिसमें हेलमेट लगाए हैं।

इस समय एक विशालकाय पहाड़ दिख रहा है जिसपर की इच सूखी घास लगी हुई और--

सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिसमें उनसे से कुछ पेड़ों में कम पत्तियां हैं और कुछ पेड़ हरे भरे हैं।

पांच व्यक्ति ऊपर की तरफ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस यह दृश्य किसी मंदिर या गुरुद्वारे की है जिसमें की चार व्यक्ति दिखाई दे रहे--